यहाँं पर ये एक दुकान है। देखिए उधर बाहार साइड में खड़ा हुआ आदमी भी दिख रहा बाइक बैठा हुआ।

पेन पेन लेलो कुछ भी ले सकते हैं आप इस दुकान से। भाई पेन और साबुन वगैरह कुछ भी मिल सकता है।

अरे अरे वरे पेड़ भी सारा टूट गया पूरा एक झोपड़ी भी टूट चुकी है यहां पर वो दूसरा मकान भी